इमारत में कई पोस्टर लगा दिख रहा है।

प्लेट का रंग सफेद है।

इस तस्वीर में एक पोस्टर दिख रहा है।

उसके सामने एक सड़क--

इस तस्वीर में एक इमारत नजर आ रहा है।

कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

एक पीला मकान नजर आ रहा है।

सामने कई गाड़ियां दिख रहा है।

इमारत का रंग सफेद दिख रहा है।

पेड़-पौधा भी दिख रहा है।

कई टेबल भी दिख रहे हैं।

दिख रहा है एक आदमी--

एक दुकान दिख रहा है।

दुकान के बाहर एक लाल डब्बा है।

बहुत सी गाड़ियां दिख रही है।

कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

बहुत सी मकान दिख रही है।

कुछ हरे-भरे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

कुछ गुब्बारे लटकाए हुए हैं।

जो कि रंग-बिरंगे दिख रहे हैं।

बहुत से लोग भी--

बहुत बड़ा एक नदी दिख रहा है।

कुछ टेबल भी दिख रहा है।

आसमान अंधेरा दिख रहा--

कमरे में जिम की वस्तुएं हैं।

एक बड़े अक्षरों में ऑफिस लिखा है।

सामने की और एक--

एक मकान दिख रहा है।

कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं।

एक मोटरसाइकिल भी दिख रहा है।

बहुत सी सब्जियां नजर--

बहुत सी फलें नजर आ रही है।

जमीन पे हरी-भरी घासें हैं।

कुछ भालू भी दिख रहा है।

बहुत से लोग दिख रहे हैं हरा-भरा --

बहुत सारा पेड़ नजर आ रहा है।

जो नृत्य कर रही है।

एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक दिख रहा है।

स्विमिंग पूल भी दिख रहा है।

एक स्टेज दिख रहा है--

कुर्सी पे बैठा हुआ--

एक मकान भी दिख रहा है।

बहुत सारा लोग खड़ा दिख रहा है।

कुछ टेबल भी दिख रहा हैं।

सामने का दीवार सफेद दिख रहा है।

सामने की ओर कुछ बड़ा पेड़--

एक कमरा दिख रहा है।

कमरा में कुछ लाइट दिख रहा है।

दीवार का रंग सफेद दिख रहा--

बहुत सी लाइटें दिख रहा--

लड़का खड़ा दिख रहा है।

पीछे एक और चार पहिया वाहन--

सामने कुछ लोग भी दिख रहा है।

कुछ लड़की भी दिख रही है।

एक सड़क भी दिख रहा है।

बहुत सारा फूल नजर आ रहा है।

पीले रंग का वाहन भी दिख रहा है।

बहुत लोग मैदान में--

एक वाहन दिख रहा है।

जो गड्ढा कर रहा है।

जिनका रंग सफेद और नीला है।

कुछ लड़कियां दिख रही है।

लड़कियां कुछ खा रही है।

हरा दिख रहा है।

कुछ कुर्सियाँ भी नजर आ रही हैं।

नीचे जमीन पर किसी वस्तु को रखा गया है।

एक नीले रंग का करकट--

कुछ मकान दिख रहा है।

बहोत सारा मकान भी दिख रहा है।